यहां पे दीवाल में सफेद रंग का पेंट किया गया है और बहुत सारी ड्राइंग बनाई गई है।

बहुत सारे गेट दिखाई दे रही है।

यहां में यहां पे बहुत सारे गुब्बारे चिपकाए गए हैं ।

तीन प्रकार के अलग अलग कलर के गुब्बारे दिखाई दे रहे है।

फेज रंग की बहुत सारी लाइटें जली हुई है एवं पर्दे दिखाई दे रहे हैं।

बहुत सारी कुर्सियांए भी दिखाई दे रही है।

यहां पे बहुत सारे बैनर्स भी लगे हुए हैं ।

झाड़ू भी दिखाई दे रही है।

इस चित्र में बहुत सारे डिब्बा दिखाई दे रहा है और यहां पे सभी डिब्बे अलग अलग कलर के हैं।

लाल रंग का है उसमें लव लिखा हुआ है।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

इस चित्र में बहुत सारे व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं जो की क्रिकेट खेल रहे हैं।

एक जगह हरा कलर का लाइट जल रहा है।

एवं यहां पे डैम जैसा एक दिखाई दे रहा है।

यहाँ पे एक महिला भी दिखाई दे रही है।

यहां पे पुतला खड़ा किया गया है।

इस चित्र में एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

बिल्डिंग में अधिकतर पीला रंग एवं लाल रंग दिखाई दे रहा है।

सीढ़ीआए भी दिखाई दे रही है।

फोटोस भी दिखाई दे रहा है एवं यहां पे पाइप दिखाई दे रही है और यहां पे एक पीली कपूर बल्ब दिखाई दे रहा है।

इस चित्र में बहोत सारे व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं और यहां पे बहुत सारी बिल्डिंगे भी दिखाई दे रही है।

यहां पे एक टावर दिखाई दे रहा है एवं यहां पे एक मंदिर भी दिखाई दे रहा है ।

दो व्यक्ति सफेद रंग के शर्ट पहने हुए हैं।

एक वाइट कलर का बोर्ड दिखाई दे रहा है बिजली का।

कुछ जिराॅक्स मशीन भी दिखाई दे रहा है।

इस चित्र में सीढ़ी भी दिखाई दे रहा है और लोहे का बहुत सारे गेट दिखाई दे रहा है।

और यहा पे बहुत सारी अलग अलग प्रकार की चार चक्के की गाड़ी दिखाई दे रही है।

छोटे छोटे पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहा है।

यहां पे एक सोफा दिखाई दे रहा है जोकि लाल रंग का है।

काले रंग के कुछ पंखे भी दिखाई दे रहे हैं।